पेड़ हरे रंग के हैं इसकी हरी पत्तियां निकली हुयी हैं पूरी टहनियाँ बनी हुयी हैं बीच में गुलाबी रंग की यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है जो फूल दिखायी दे रहा है जो नारंगी कलर के दिख रहे हैं।

यहाँ पे एक कपड़ा दिखाई दे रहा है कमरे के नीचे फर्श पे पीली और लाल कलर की है इसकी दीवालों को सब पीली कलर की दिख रही है उस पे सफेद यहाँ पे चार्ट रखा हुआ है।

तराजू है कद्दू है | एक नीली रैक दिखाई दे रही है | काली पन्नी दिखाई दे रही है | ईंट दिखाई दे रही है | रोड दिखाई दे रही है | सामने एक आदमी बैठा दिखाई दे रहा है | बिजली के तार खम्बे दिखाई दे रहे हैं | रोड जमीन--